ये हमारे पूजनीय भगवानों में से एक सबसे बड़े भगवन हैं शिव शंकर जी।

आइरेलेक्स आइरेलेक्स ऑफ बॉक्स --

इससे गु गुलाब और गेंदा का फूल भी कहता है चमेली का भी यह हो सकता है और यह बहुत सुन्दर है ।

ठीक कर रहा है ये बहुत सुन्दर मेकानिक दिखाई दे रहा है उसके आसपास भी गाड़ी है पिकउप और ये कार है ।

ऑटो भी है ई रिक्शा भी है।